देखिये यहाँ पर कई प्रकार के मजदूर है। देखिये यहाँ पे ओवरब्रिज सा बना हुआ है। देखिये डंडे खड़े हुए है यहाँ पर।

देखिये फ्लोवर्स की एक बढ़िया माला हैं देखिये यहाँ पर दुकान है फ्लोवर्स की यहाँ पर काफी लोग फ्लोवर्स खरीद भी रहे हैं और गुलाब के फूल रखे हुए हैं बा --

एक हाथी है। एक लड़का बैठा हुआ है। देखिेए जिसमे पेड़ पर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर काफी --

यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है| देखिए आप बाइक पर खड़ा हुआ है| दो बाइके खडी हुई है| इस पर एक हेलमेट है।

देखिए अंदर भी काफी लोग बैठे हुए है| शायद यह एक हॉस्पिटल है| देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है यह देख सकते हैं आप लोग--